ब्रिज के दोनों तरफ पहाड़ियाँ दिख रही हैं नीचे सूखी सी नदी दिखाई दे रही है ब्रिज के नीचे।

ये चार लेडीसे खड़ी हुई है ये तीन लेडीसे और एक जेंट्स खड़ा हुआ है।

दो पिलर बने हुए हैं ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है नीचे गेट लगा हुआ दिख रहा है।

मकान के पीछे एक टावर दिखाई दे रहा है बड़ा सा एक बड़ा सा मीनार जैसा टावर बना हुआ दिख रहा है रात का समय है अँधेरा।